ये एक स्टार मेंस पार्लर के नाम से एक पार्लर बना हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है बैजु दास भवन हेमरा रोड बे बेगूसराय लिखा हुआ है। यहाँ पे नीचे इसका जो गेट है ट्रांसपेरेंट गेट है उसके अंदर जो सामान रखा हुआ है वो भी देख रहा है।

नदी बनी हुई है नदी के बीच मे एक शिप चल रही है शिप एक बड़ी-सी शिप चल रही है और एक यहां पे ब्रिज बना हुआ है रेलवे ब्रिज इस पर से रेल टी रेल जाने वाला ब्रिज बना हुआ है नीचे नदी के किनारे पे बहुत से लोग खड़े हुए है गुम --

पत्थर का एक बड़ा सा वो बना हुआ है नदी बनी हुई है ये सूखी हुई नदी पूरी हुई आसपास मकान दिख रह है बड़े-बड़े पेड़ पौधे पहाड़ दिख रहा है।

एक क्लास डांस क्लास चल रही है यहां पर बहोत सारी गर्ल एंड बॉयस कुछ डांस स्टेप कर रही है हाथ ऊपर करके एक पैर ऊपर करके एंड यहां पीछे दिवार पे परदे लगे है ब्लै --

आसपास में पेड़ पौधे दिख रहैं हैं बड़े-बड़े और एक मकान मकान वगैरा देख रहैं हैं झंडे लगे हुए हैं और यहां पर घास वगैरा बनी हुई हैं।